मंदिर में एक विशाल वृक्ष भी लगा हुआ है।

तालाब में पानी साफ नहीं दिख रहा है।

जो पत्थरों से बना हुआ है और सीढ़ियों की ओर जाता है।

सूरज की रोशनी पेड़ों की छाया बना रही है।

पर इसकी सीढ़ी का कलर लाल है।

यह चित्र किसी बार या रेस्टोरेंट का प्रतीत होता है।

टेबल सफेद रंग का दो बेंच भी लगे हुए हैं।

जहां व्यक्ति कुछ देख रहे हैं।

इस चित्र में एक ग्राउंड का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां कई सारी कुर्सियां व्यवस्थित रूप से लगाई गई हैं।